पाइप की मदत से चल रही है। पाइप में यह रहती है प्रेस कर रहा है कई सारे प्रेस करने के लिए कपड़े रखे हुए हैं जिसमें एक व्यक्ति दिखाई दे--

हरियाली के लिए कुछ पोस्टर भी लगाए गए हैं कुछ काउंटर भी लगाए हैं।

यह एक मैरिज हॉल का गार्डन दिखाई दे रहा है जिसमें की काफी ज्यादा काउंटर बने हुए हैं। काउंटर पर कुछ स्टैचू बैठे हुए हैं।

यहाँ पे काफी ज्यादा खेत खेती दिख रही हैं जिसमे की कुछ फसलें बूगी हुई है आस पास कई घने वृक्ष भी दिखाई दे रहे हैं ।

यह एक प्रकार का होटल टाइप का है | इसमें काफी सजावट के लिए लाइटे लगाई गयी हैं।

आस-पास कुछ सामान रखे हुए हैं। कुछ कुर्सियां रखी हुई हैं।